और उसके सामने झाड है पेड़ पोधे है और स्कूटी भी गाड़ियाँ भी खड़े है।

लाल अम काला कलर का और उपर में बड़ा बड़ा सा झाड देख सकते है और ये ये एक --